बहुत लाल पीला में सजा है बड़ा सुन्दर लग रहा है जैसे लग रहा है शादी हो रहा है किस --

इसमें एकदम छतरी के तरह टावर जो बना हुआ है बड़ा ही सुन्दर है। मैंने वहाँ फोटो भी खिचवाया है।

ए.टी.एम. रेड कलर में लिखा हुआ है।

टोटो में जैसे लगता है मोटरसाइकिल का हैलोजन लैंप लगा हुआ है। रेड कलर का उसका बम्फर लाइट चक्का --

और वहाँ देखने लायक बड़ा ही आकर्षक चीज है। जन्म स्थान रछवाड़ मंदिर।

जम्मू स्टेशन मलीपूर जम्मू एक ही जगह को कहा जाता है यहाँ दो पटरियाँ हैं वन ट्व --

श्री मणि प्रसाद सिंघ मसौडी अंठानवे दो सौ छियासाठ सैतीस डिसमिल चक्रधर प्रसाद सिंघ वास्की नंदन सिंघ स्वर्गीय राम प्रसाद सिंघ ।